इस तस्वीर में हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक कच्चा मकान दिखाई दे रहा है जो कि--

बाहर कुर्सिया रखी हुई है आसमान दिखाई दे रहा और बहुत सारे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

और कुछ काले कलर काले रंग की कुर्सिया और लाल लाल टेबले दिखाई दे रही है।

सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ परदे लटके हुए दिखाई दे रहे --

एक पार्क में बहुत सारी सफेद कुर्सिया और टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में आसमान दिखाई दे रहा है एक पहाड़िया दिखाई दे रही है तालाब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे सड़क दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रह है और लाल रंग से ईसाईओ का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है सफेद दीवार के ऊपर।

इस तस्वीर में एक टूटा फुटा मकान दिखाई दे रहा है और कुछ हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ा गिरजाघर दिखाई दे रहा है।

और कुछ बाँस दिखाई दे रहा है और कुछ ईमारत बनती हुई दिखाई दे रही है ।

लाल लाल इंटे दिखाई दे रही है हरा पर्दा दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है थोड़ा।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ नीली नीली टंकिया दिखाई दे रही है और कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और अंदर उसके पीली लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है।

सुरमयी रंग की दो पहिया की वाहन दिखाई दे रही है और कुछ कचरा दिखाई दे रहे है।